देख रहे हैं ये जो तस्वीर है ये तस्वीर एक जैसे कि पहाड़ी इलाके की तस्वीर है।

काफी बड़े-बड़े पत्थर हैं जिस पे कि हम पांव रखकर ये नदी पार कर सकते हैं और पीछे पहाड़ी हैं।

ये तस्वीर एक पोस्टल की तस्वीर जहाँ पर की जिसमें हम देख सकते हैं --

तस्वीर में देख रहे हैं ये जो तस्वीर है यहाँ पर एक दिए में मोमबत्ती रखी --

ये तस्वीर एक मेले की है जहां पर की बच्चों का झूला वगैरा लगा हुआ है जेसे कि --